एयरटेल का बैनर लगा हुआ है अ अंदर कोई फोटो वोटो सा दिख रहा है कुछ छोटा सा शॉप है।